यहां पे काफी अच्छा माहौल रेहता है काफी अच्छा वातावरण रहता है लोगो को यहाँ पे आने मे बहुत ही अच्छा लगता है।

यहां पे घूमने की बहुत सारी जगहे है लोग यहां पे घूमना काफी पसंद करते है और यहां पे लोग अपने परिवार के साथ आते है घुमते है --

यहां पे सब्जियां बहोत ही सस्ते दामों मे दी जाती है जिसके कारन इस दुकान मे बहुत भींड़ होती है।

यहां पे लडकियों का बाल काटा जाता है और यहां पे शादी विवाहो के सीजन में लडकियां आती है शादी विवाहों के मेकप कराने के लिए।

यह एक दुकान है और यहां पे बहोत सारी समाने मिलती है।

इस बगीचे में बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है और बोहोत सारे लोग आते है इन बगीचों मे घूमने मे घूमने के लिए।

और यहाँ पे सूट सलवार और भी बहुत सारे कपड़े मिलते हैं लोग यहाँ पे कपड़े खरीदना काफी पसंद करते हैं जिसके कारन --

यहां पे खेलने मे बहोत ही अच्छा लगता है।